एक बड़ी लाइट है जो पुरे स्टेडियम के अंदर रौशनी देती है रात के समय --

एक बेसमेन्ट के नीचे अंदर एक स्टेज लगाई गई है।

दुकान है। दुकान के अंदर ये वाईफ उनका लंच लेके आई हुई है।

यहाँ पर एक होटल के अंदर एक पलेट में --

पकोड़े नजर आ रहे हैं यह पकोड़े --

पेप्सी का पोस्टर लगाया हुआ है पेप्सी का पोस्टर इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग --

इसकी एडवटाइज देखने के लिए आते हैं।

पेड़ नजर आ रहे हैं यह पेड़ बहोत पुराने हैं। पुराने होने के कारण यह हवेली भी खंडित हो चुकी --

कॉलेज की बिलडिंग है। बिलडिंग के बाहर पार्किंग बनाई हुई है। पार्किंग में गाड़ी --

अलग-अलग डेक्स बनाये गए हैं यह डेक्स प्लास्टिक की चेयरों से बनाये हुए हैं।

कुछ टेबल कुछ चेयर और एक बड़ी चेयर है जोकि इस कंपनी की ओनर की है।